ग्राउंड के अंदर बहुत सारी घास उगी हुई है ग्राउंड हरा हरा दिखाई दे रहा है सामने ये सफेद कलर किया हुआ है घर बने हुए हैं।

बीच में एक गोल सर्कल बना हुआ है उसके अंदर एक मूर्ति है और उसके पीछे घर बने हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

सारे विद्यार्थियों के सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं ग्राउंड में कुछ छोटे छोटे पौधे पेड़ लगे हुए --

बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ी दुकान है दुकान के अंदर बीच में ब्लैक कलर की दो कुर्सियां पड़ी हैं।

कॉस्मेटिक बैग ऊपर लिखा हुआ है नीचे दुकान के अंदर बहोत सारे पैकेट पड़े हैं।

नीचे सफेद कलर की कुछ डोरी पड़ी है यहां पर इसके पास में--

एक आदमी खड़ा है इदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तार लगी हुई है खंभा लाइट वाला --

सामने बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं पे पेड़ों के बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे--

इस चित्र मे होटल हीरालाल की बनी हुई है जो चार पांच मंजिल ऊंची है।